और उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है जो स्टार की आकृति को दर्शा रहा है।

गुब्बारों से बना हुआ एक द्वार बनाया गया है जो गुब्बारों का कलर है।

इसमें हेलो प्लेग्राउंड में खेल भी रहे है काफी सारा भीड़ इकट्ठा हुआ है।

मिठाई की यह एक काउंटर है और उसके पीछे काफी सारा कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुआ है।

और उसके बगल में एक क्रिकेट प्लेयर का भी फोटो लगा हुआ है जो--

लाइट के द्वारा उसको भी दिखाया जा रहा है और सामने दो सोफे नो में टेबल लगे हुए है।

अकसर स्नान किया करते हैं उसी का यह एक दृश्य है यहां दो लोग अह स्नान करने कर रहे हैं।

इस तरह से यह एक प्रकृति का माहौल दिखाई दे रहा है काफी सुंदर और सुहावना माहौल में है।

यहा पर बरमला एक दूसरे को शादी के जोड़े में दिखाई दे रहे हैं।